जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

तीन लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहा है लाइट भी लगी हुई दिख रही है ए_सी भी लगी हुई--

यह ये घर दिखाई दे रहा है कुछ तो डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं जोकि--

पेड़ भी दिखाई दे रहा है बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

एक ये ब्लैक कलर की शर्ट में पहने हुए दिखाई दे रहे हैं रोड भी दिख रहा है पेड़ भी दिखाई दे रहा है बादल भी दिखाई दे रहा है।

फर्नीचर भी दिख रहा है। लाइटें भी लगी हुई दिख रही है।

ये रैक दिख रही हैं जिसमें एक बोतल है जूस भरा हुआ दिख रहा है रैक --

यह वाशिंग मशीन दिख रही है इसमें झंडे भी लगे हुए दिख रहे हैं। बाहर एक कार भी दिख रही है।

ये घर दिखाई दे रहा है जोकि पिंक कलर का दिख रहा है घर के ऊपर पेड़ भी दिखाई दे रहा है बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ भी दिख रही है।

ये फैक्ट्री दिखाई दे रही है जोकि वाइट कलर की दिख रही है।

सेजरी भी लगी हुई दिख रही है यहां पे खिड़की भी दिखाई दे रही है।

टेबल भी रखी हुई है चेयर भी रखी हुई है दीवाल पर सीनरी भी दिखाई दे रही है माला भी लटकी हुई दिख रही है।